बाहर टेबल लगी हुई है खाने की बेंच हैं।

और ये बड़ी सी क्लासरूम है जिसमे बच्चे पढाई करते हुए दिखाई दे रहा है।

फोटो लेखा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।